और आगे की तरफ इंजन है पीछे की तरफ डिब्बे हैं ।

महापुरुषों की फ्रेम टंगे हुए है।

और यहाँ पर ये बल्ली पड़ी हुई है सरिया पड़ी हुई है ।

जिसमे कुछ फूल है और ऊपर की तरफ रस्सियाँ है जिसमे झंडे लगे हुए हैं।